जमीन में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और हाथ में कुछ रिब्बन्स रखे हुए हैं बच्चा मास्क लगाए है पीले रंग का टी-शर्ट पेहना है पीछे में गमला रखा गया है जिसमें कुछ पौधे लागए गए हैं।